यहाँ एक वाटर पोल दिख रहा है जिसमे लाइट लगा हुआ है जहां पे एक लड़का बैठा हुआ है पोज मारके --

यहाँ ग्रिल से ढका हुआ है चारो तरफ से घिरा हुआ है।

और इस रु आ एक पर्दा भी लगा हुआ है जो पीला पीला कलर का है ये तीर अंगूठी पहना हुआ है ।